और उसका फेस छुपा हुआ है।

और सबसे आगे स्टेज में लाइट है राइट साइड में चार लेफ्ट साइड में चार।

एक लड़का चला रहा है हेलमेट ब्लैक कलर का पहन के।

ये फोटो में वाइट कलर का दो गाड़ी घर का बाहर है।

का बगल बगल में एक मूर्ति भी है।

लाइट जल के है एक ठो ऊपर में और ए_सी भी टंगा के हैं।

पीछे में बहोत सारा कपड़ा टंगा के है हैंगर में।

ऊपर मैं लाइट जल के है येलो कलर का ब्लू कलर का रेड कलर का।

बीच का खिड़की से एक लड़का झांक रहा है।

पिलर सब है ब्लैक कलर का दो ठो दिख रहा है।

चार फ्लावर पॉट है जहां में फ्लावर सब है तीन कलर व्हाइट है और एक ब्लैक ।

ये फोटो में वुड से बना हुआ तीन टेबल दिख रहा है।

ये फोटो में बहुत सारा घर है और रस्ता से गारी लोग जा रहा है।

वॉल जो लाल कलर का पेंट किया--

ऊपर में बहोत सारा फैन टंगा के है ट्यूबलाइट भी जल के है।

आगे में पर्पल कलर का बेड बिछा के है।

फोटो में सामने में एक लाइट है जो येलो कलर का जल रहा है।